जो जा रहे हैं और यहां पे है एक घर जो बिल्डिंग है। बिल्डिंग कलर है व्हाइट ।

और होते हैं एक फंवारा जो वहां पे पानी--

बहुत सारे पेड़ वगैरह रखे हैं छोटे छोटे भी हैं।

यहां पे एक आदमी ठहरा हुआ है जो यहां पे चश्मा पहना है टी--

यहां पे एक रूम है रूम में यहां पे--

और दिवाल का कलर व्हाईट है और यहां पे कुछ तो प्रोजेक्ट बता रहे हैं और यहां पे है --

एक बड़ा सा घर है जो इस घर के--

कांच के बाहर बहोत बहोत बडे बडे पेड़ है सौ है जाने के लिए रास्ता भी दिखाई दे रहे हैं और छोटा सा यहां पे दरवाजा है।

साइड में बिल्डिंग है और आसमान में बादल है।

यहां पे खड़े हैं हरे रिक्शा गाड़ी--

यहां पर रखा गया है और यहां पे घर है एक सामने।

जो हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। यहां के कैमरा वगैराह लगाई दिया हैं।

और यहां पे है बड़ा सी खिड़कियां है दरवाजे है काले कलर के।

जो यहां पे लगाया गया है यहां पे लिखा गया है।

और यहां पे बहोत सारे पेंटिंग करे हैं का कलर टिन दिखाई दे रहा यहां पे--

नीले कलर की और येल्लो कलर की है। अंदर लाइटिंग है।

यहां पे क्रॉस करके जाने के लिए हाईवे है और यहां पे साइड में--

जो यहां के टेबल कुर्सियां रखे गई हैं जो यहां के कुर्सियां आ--

यहां पे है एक दुकान जो यहां पे फ्रेम रखा गया है।

जो यहां पे टेबल कुर्सियों के बैठे हैं लेडिस हैं जेंट्स है।